फूल मालाये टंगी हुई हैऔर ये अभी इस इस शेड के अंदर नजर आ रहा है | ऊपर टीने का छत लगा हुआ नजर आ रहा है बस --

ये नदी है | नदी के किनारे पगडंडी बना हुआ है और किनार पे बहुत सारे एक लाइन से बोट लगे हुए नजर आ रहे हैं ।

और अभी पानी का जलस्तर बहुत ही नीचे है और पानी नदी मे पानी बहुत कम नजर आ रहा है।

गार्डन में बहुत सारे सन्यासी गोल कर के गोलाकर बनाये हुए सारे सन्यासी भगवा कपड़ा पहने हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं ।

यह एक जैन धरम का स्टेचू नजर आ रहा है पारसनाथ भगवन का स्टेचू नजर आ रहा है।

ये बहुत ही वाइट कलर का मार्बल का बना हुआ है और इसे जैन धरम लोग मानते है और ये वाइट मार्बल का मंदिर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में ।